गवर्नमेंट स्कूल उसके बाहर एक कार खड़ी हुई है और पार्क एरिया दिखाई दे रहा है गार्डन का--

उसमें नीले रंग की चेयर है और एक घड़ी लगी हुई है एक कमरा जिसमें बैठे हुए हैं।

इसमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि अ कुर्सियां लगी हुई है और टेबल पर भी और कैंडल लगी हुई है बहुत सारी--

यह जो तस्वीर है इसमें हमें बड़ी-बड़ी बेंच जो होती है--

एक अ गार्डन एरिया का यह सीन है जिसमें अ छोटा सा यह अ शायद छोटा मंदिर सा है बना हुआ है।

एक लाइब्रेरी है इसमें लाइब्रेरी के अंदर कई सारी अ सभी तरह की अ जो है बुक्स रखी हुई है किताबें --

पिक्चर में इस तस्वीर में हमें अ नजर आ रही है एक अलमारी बड़ी सी लकड़ी की अलमारी दिखाई दे रही है।

अ ब्राउन और अ क्रीम कलर की और पास में ही एक अ जग रखा हुआ है दो पानी की बोतल रखी हुई है छोटी।

अ हमें इसमें नजर आ रही है बहुत सारी जींस रखी हुई है जींस और एक जैकेट भी है।

अ सेंटर में जैकेट है और आसपास दो खोल कर भी दिखाई गई है और बाकी सारी--

और अह रखी हुई हैं सलीके से जमी हुई काफी सारी जींसे है यहां।

दिखाई दे रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं क्लासरूम का यह सीन है और--

एक अ खाली अ कमरा दिखाई दे रहा है जहां एक अ ब्लैक सोफा लगा हुआ है सामने पंखा लगा है उसके और अ दो --

दो तीन कुर्सियां टेबल भी लगी हुई हैं और उसके बिल्कुल सामने कांच के उस तरह--

सोफा चल रहा है वो उसमें अच्छा सा एक सोफा है बीच में सेंटर टेबल उसके टेबल लगे हुए हैं।

और एक आदमी है जो खड़ा हुआ है ये सोफों की दुकान जैसी लग रही है बहुत सारे सोफे रखे हुए--

के अंदर कई सारे हमारे डेली यूजेस के जो सामान मिलता है।

अ यह वहीं है शॉपिंग अ जो अ होती है शॉप उसका नाम विशाल मेगा माउंट --

हम देख रहे हैं जो हमारे सामने अ कुछ बॉक्सेस काफी नीले पीले हरे रंग के बॉक्सेस रखे हुए हैं और--

और उसके पीछे एक बड़ा सा मंदिर अ अ मंदिर बना हुआ है।

इंडियन ऑयल लिखा हुआ है यह पेट्रोल पंप है उसके बाहर सड़क नजर आ रही है।

इसमें हमें तस्वीर में जो नजर आ रहा है वह एक रेस्टोरेंट लग रहा है हॉट एंड स्पाइस या कुछ ऐसा लिखा हुआ है।

बर्गर बना हुआ है कुछ सीन भी बने हुए हैं।

खाने पीने के तो ये फास्ट फूड की कोई शॉप लग रही है जैसे फास्ट फूड कॉर्नर हो।

एक साइड ईटें जमी हुई है मकान बनाने की तैयारी जमती है।

ये रेत को जो पीसने का काम करती है गिट्टियों को वो ये --

हमें दिख रहा है कि एक रेस्टोरेंट है और उसमें काफी अच्छा फर्नीचर बड़े-बड़े कुर्सियां--

सोफे सोफा कुर्सियां अ अ डली हुई है और सामने हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ--

यह एक बड़ी सी फैक्ट्री जैसी नजर आ रही है जिसमें काफी सारे अ लोहे का अ बना हुआ है।

इस तस्वीर में हमें जो नजर आ रहा है कि एक ऑफिस जैसा या कुछ कैबिन जैसा है और सामने अ कुछ--

बोटल्स रखी हुई है अलमारी के अंदर और दीवार पर जो तस्वीर लगी है उस पर अ अ ओम लिखा हुआ है।

और बहुत सारी चीजें हमारे अ डेली यूज की रखी हुई है और एक बड़ा सा फ्रिज भी नजर आ रहा है पानी की बॉटल--

और जहां पर बच्चे बड़े बूढ़े सभी आते हैं खेलते हैं।

टहलते हैं वॉक करते हैं और ये पेड़ लगे हुए हैं हरियाली में बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य दिख रहा है।

यह फूलों से सजाए गए बाहर कुर्सियां डली हुई है और एक आदमी खड़ा हुआ है और यह एक सिटी सेंटर सैलून गोपालगंज का है।

पानी की बोतल चाय नाश्ता वगैरह जो अ अ आदमी एक बैठा हुआ है।

अ अ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और अ इस यह जो खाने पीने और चाय नाश्ते का जो जगह होती है वो लग रही है।

अ अ जो बियर बार होता है वो लग रहा है और क्योंकि इस पर पापा विस्की लिखा हुआ है बोर्ड लगा हुआ है।

कृपया दान इसी में डालें ये अ लिखा हुआ है और अ काफी अच्छा यह मंदिर को डेकोरेट किया गया है।

में हमें एक ट्रेन नजर आ रही है रेलवे ट्रैक है पटरियां हमें नजर आ रही हैं और रेलवे स्टेशन भी ऊपर जो सीढ़ियां गई हुई है।

छोटे पेड़ अ छोटे पौधे लगे हुए हैं गमलों में और बड़े पेड़ बने हुए हैं किनारे से--

एक आदमी बैठा हुआ है बाकी सारे खड़े हुए हैं गणेश भगवान की बड़ी अ सुंदर सी यह तस्वीर बड़ी सी बनाई है मूर्ति।